और यहाँ पर लोग अपने साधनो के लिए आते-जाते रहते है यहाँ पे कही भी मतलब जाने के लिए दिल्ली मुंबई --

और यही से अपना ट्रैन पकड़ते है।

यह एक दुकान है जो काफी अच्छा है जहाँ पे अमूल दूध--